यहाँ पे क्रिसमस डे का फंक्शन चल रहा है। ये सितारा लगा हुआ है और लोग भी अपने सब लोग टोपी ओढ़े हैं। एक आदमी माइक पकड़े हुए है गुब्बारे हैं।

लड़की खड़ी हुई है और लोकेशन बहुत अच्छा दिखाया है इसमें यहाँ पे लाईट वगैरा सब लगी। डेकोरेशन का अच्छा इंतजाम है।

किराणे की दुकान पर हर चीज़ उपलब्ध मिलती है| दूध घी दाल चीनी अट्टा चावल सब कुछ मिलता है| जिससे इन्सान को जरुरत होती है वो ले जाता है आके किरणे स्टॉर यह पे मम डेरी लिख रहा है| फ़रम भी लिख--

यह एक गोदाम की तस्वीर है जिसमे सामान रखा जा रहा है।

ये दो आदमी है जो मास्क लगाए हुए हैं चप्पल पहने हुए हैं कपड़े पहने हुए हैं। ये बोरिया उठ्वाके दूसरे के सर पर रखवा रहे हैं और वो जाके गोदाम में रख रहा है। स्टोर कर रहा है ताकि जब भी कोई जरुरत पड़े तो निकाल ले।

फर्श पे पड़ा हुआ है वैसे योगा सेहत के लिए बहोत अच्छा होता है। योगा हर इंसान को करना चाहिए। योगा की वजह से सेहत सबकी फीट रहती है इंसान को अपनी लाइफ में फीट रहना चा --

ये एक मॉल है जहाँ पे बैग वगेरा रखे हुए हैं और जहाँ पे सत्तर परसेंट ऑफ है। यहाँ मॉल वगेरा में कभी-कभी बहुत ज्यादा अच्छे ऑफर्स चलते हैं जिसमें लोग अपने जरूरत का सामान कपड़े बैग वगेरा लेते हैं।

हर इंसान को जिम करना चाहिए। जिम से सेहत सही रहती है और जब इन्सान की सेहत फिट रहती है तो वह इंसान अ-अच्छे तरीके से जी सकता है।

ये एक लड़का लेटा हुआ है दूसरा बैठा हुआ है तीसरा दूसरी तरफ देख रहा है। ये फैक्ट्रियां होती हैं तरह तरीके से पाईप वगैरा लगे हुए हैं जो लोगों की जरूरत के सामान बनाते हैं इनसे बहुत फायदा होता है।

ये लोग दिवाली का फंक्शन मना रहे हैं ये जगन दिवाली आती है तो ये लोग पटाखे वगैरा जलाते हैं।

लाईट वगैरा भी बहुत अच्छी लगी हुई है इन लोगों ने अपना रिक्शा ख़रीदा है नया रिक्शा है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे स्लैब डालने का काम चल रहा है यहाँ पे एक आदमी सामान लेने जा रहा है दूसरा आदमी फट्टे को घसीट रहा है।

मज़दूर लोग काम कर रहे हैं मिस्त्री भी काम कर रहा है। जो लोगों के लिए घर बनाता है और उसके बाद मज़दूर बेचारे बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए।

यह लड़का जिम कर रहा है। जिम इंसान के लिए बहुत अच्छा है जिम से इंसान फिट रहता है। और तबियत वगेरा सब सही रहती है सेहत रहती है।